इसीलिए ये एक-एक करके अंदर जा रहे हैं।

और इस नाव पर तो अपने देश के तिरंगे लगे हुए हैं छोटे-छोटे।

अरे वाह भाई आपके पीछे तो ये डैम है और आप यहां पर फोटो खिचवा रहे हो।

सामने गुरुजी योगा सिखा रहे हैं और सब उनको देखकर योगा सीख रहे हैं।

देखा ये तो मुर्गी फार्म है और यहाँ पर कितनी सारी क्वांटिटी में मुर्गीियां हैं।

और ये फ्रेम ऐसे लगाया है बिल्कुल देखो मंदिर की तरह और इसके गुंबद जो हैं ऊपर के वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मस्जिद पर होते हैं।

और यह एक कुत्ते का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेचारा कुत्ता बीमार हो गया है और यह इसको काट के इसकी इंजरी कर रहे हैं।

और देखो इसकी आंखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं।

यहाँ पर दो चार फोटो खींचवाहो नआएंगे इस झरने में।

यहाँ पर तो चारों तरफ कारे ही कार्य कारे खड़ी हैं।

क्या बात है भाई यार यह लड़कियां कितनी प्यारी लग रही हैं इनके कपड़े इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं।

और ये तो बिल्कुल ताजी झींगे लग रही हैं भाई।

भाई ये सोफा तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है बिल्कुल नया सोफा है।

वाह भाई भाई मैं भाई सच में यार ऐसी ही जगह आना चाहता था।